हाँ पर अच्छे अच्छे ग्रीन कलर के व्हाइट कलर के बलूसं डाले गए हैं।

इस फोटो में दिखाया है कि--

यहां पर बहुत सारे बच्चे सर्कल बना कर--

फर्श है फर्श के ऊपर यहां पर एक यहां पर एक बेड है मशीन से बना बेड यहां पर एक --

यहां पर पत्थरों के बीच में भी एक पेड़ लग--

है यहां पर एक अंकल है जो ये काम को--

यहां पर ये वाश वेसन टंगे हुए हैं।

यहां पर दो औरते खड़ी हुई है।

यहां रोड पर किनारे यहां पर एक झोपड़पट्टी है यहां पर एक लाइट का खंभा भी दिख रहा है।

इस फोटो में दिखाया है कि--

जिसके ऊपर लाइट लगी हुई हैं।

पेहने टी_शर्ट पेहने लड़का खड़ा हुआ है और यह हाथ में--

और यहां पर कुछ मशीनें भी है जो पाइप के जैसी दिख रहे--

इस फोटो में दिखाया है कि यहां बहुत बड़ा पार्क है।